एक व्यक्ति कुर्सी पर सफ़ेद रंग के वस्तुओं में बैठा दिख रहा है और कुछ लोग उसके पीछे बेठे हुए हैं ।

यहाँ पर तीन लोग एक नाव पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक महिला हाथ में हाथ में झोला लेके खड़ी हुयी है।

सब लोगों ने आ क पैर मे जूते पहन रखे है। सब लोग अपने हाथ को सीधा रखे हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग अपने वाहन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बल बालोरघाट एरपोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ --

यहाँ पर कुछ कागज के टुकड़े और लाल टेबल भी नजर आ रही है ।

यहां पर कुछ व्यक्ति लोग दिख रहे हैं। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा दिख रहा है।